पीले कलर की क्रेट है।

यहां पर बहुत सारे बजरे भी पड़े हुए हैं।

साइड में एक पार्किंग भी दिखाई दे रहा है।

दीवारों पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग टंगी हुई है।

उनके हाथों में लुटिया है।

नीचे छोटा छोटा घास भी दिखाई दे रहा--

सामने पीछे के बागों की फूलवारी है।

काले कलर की जिम के समान है।